और आप देख सकते हैं आस-पास बहुत सारे घर है जो कि यहाँ पर मंदिर है तो काफी अच्छा लग --

कॉलेज दिख रहा है और इस तरफ एक घर बन ऊपर बिजली की तार लगी हुई है। नीचे झूठ काफी शांत रहा है और शाम --

और पिंक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

बुज़ुर्ग इंसान दिख रही है और बस का कलर व्हाइट और नीला है।

जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे।